यहां कई सारे व्यक्ति नजर आ रहे है।

यह चित्र किसी अस्पताल का नजर आ रहा है।

यह चित्र किसी स्थान का नजर आ रहा है जहां सामने की ओर कई सारे व्यक्ति नजर आ रहे हैं।

पीछे की तरफ एक इमारत बना हुआ है जिसमें कुछ खिड़कियां नजर आ रही है।

पीछे की तरफ कई सारी लंबी लंबी और हरे भरे पेड़ भी दिख रहे हैं।

जमीन पर एक लाल रंग का कारपेट भी बिछा हुआ दिख रहा है।

यहां कुछ खिड़कियां भी दिख रही है।

यहां जमीन की तरफ दो टायर भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर कहीं सारी बालकोनी भी नजर आ रही है।

यहां सड़क पर कुछ घास फूस भी नजर आ रही है।

यहां पर कई सारे हरे भरे और लंबे लंबे पेड़ नजर आ रहे हैं।

यहां हरे रंग की डस्टबिन भी रखी दिख रही है।

यहां पर कुछ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां एक काले रंग की लोहे के मदद से बनी दरवाजा भी दिख रहा है।

यह दृश्य किसी पार्क का नजर आ रहा है।

यहां कई सारी लंबी लंबी हरी भारी पेड़ नजर आ रहे है।

दरवाजे के ऊपर अरबी में कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां कुछ क्रेट भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं जिसमें कांच के बोतल रखे हुए हैं।

अंदर की तरफ़ कई सारी समाने नजर आ रही हैं।

यह चित्र किसी खेत का दिखाई दे रहा है ।

अ पीछे आईना भी लगा हुआ दिख रहा है।

जमीन की तरफ कुछ लोहे की सामान भी रखे हुए नजर आ रहे हैं।